ये किसी फल फ्रूट् के ठेले की इमेज है इस इमेज में हमें बहुत सारे फल फ्रूट्स दिख रहें हैं जो की कैरेट में रखे हुए हैं।

किसी के घर के सबसे मेन गेट की इमेज है इस इमेज में हमें सिर्फ मेन गेट दिखाया गया और एक बड़ा सा घर है जो की जिस पर कलर हरा कलर हो रहा है।

और इस घर के अन्दर बहुत सारे पेड़-पौधे जैसे उग रहे है और ये मैन द्वार की --

इसमें हमें बहुत सारी मेज़-ब्रेंचेस दिखाई दे रही हैं जो कि लगी हुई --

किसी प्ले ग्राउंड की इमेज है इस इमेज मे हमे गर्ल्स एंड बॉय्ज़ दोनों दिख रहे है जो कि दौड़ते हुए दिखाई दे रहे है।

ये सूरज डूबने के टाइम की इमेज है इस इमेज में हमें पेड़-पौधे दिख रहें हैं एक बड़ा सा खंभा जैसा दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं।

ये ये फिश नापने के लिए तगड़ी किलोवाट लगे हुए हैं और दो लड़के खड़े हुए हैं।